ने और किचन मिट्टी वाला है| इसलिए सारे समान को अच्छे से ढक के रखा गया है| ये पॉलिथीन के अंदर रखा है और यहाँ पे बस्ते में भी थोड़े से समान रखे हुए हैं।

दीवार है दीवार की बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई है ये जो दीवार है ये ब्राउन कलर की है उसमें गोल-गोल अंदर की तरफ का हिस्सा किया गया है बाहर एक मूर्ति रखी हुई है जो की वाइट कलर की है।